और किराना की दुकान है जिसमे घर क राशन और बचे लोग क लिए चिप्स कुरकुरे लैस चॉकलेट वगैरा मिलती है।

कुत्ते का इलाज किया जा रहा है और यह अऽ पेट्स के डॉक्टर है।

और रिसेप्शन के टाइम में यह स्टेज बनता है और दूल्हा दुल्हन इसपे बैठते है और तस्वीर खींचते है महमानो के साथ में ।